इसमें मुझे बहुत सारा सामान रखा दिख रहा है।

इसमें मुझे संकल्प नशा मुक्ति केंद्र दिख रहा है।

इसमें मुझे दरवाजा लगा दिख रहा है।

पार्क में मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक व्यक्ति दिख रहा है।

इसके पिछे मुझे एक पेड़ लगा दिख रहा है।

स्टेज में मुझे दो महाराजा कुर्सियां दिख रही हैं।

इसमें मुझे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

पीले हरे लाल सफेद गुब्बारे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कार पार्किंग दिख रही हैं।

हॉल में मुझे बहोत सारे फैन लाइट्स दिख रहीं हैं।